जैसा की हमे यहाँ दिख रहा है की यहाँ एक कोचिंग क्लास चल रही है और यहाँ पर हमें बहोत सारे बच्चे दिखाइ दे रहे है।

हमें बहोत सारी मशीने दिख रही है।

ट्रेक्टर दिखाई दे रहा है जो की यहाँ पर हमें गेहूँ दिखाई दे रहे है गेहूँ का ढ़ेर--

और हमें आस-पास में हमें हा हरे-हरे झाड़ पेड़ भी दिखाई दे रहे है और--

एयरोप्लेन लैंड हुआ है और यहाँ हमे बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे है जोकी कुछ लोग उसमें से उतर रहे है।

जोकि यहाँ टूटी -फूटी सी जगह भी दिखाई दे रही है।

और इस मेन गेट और ये ट्रांसपेरेंट है।

येल्लो कलर की फिसलपट्टी दिखाई दे रही है जो की ये बच्चो की खेलने की है।

और हमें यहाँ बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है जी की कुछ लोग दूकान के बाहर है और कुछ लोग गाड़ी से है।

और हमें यहाँ कुछ फर्सिया टूटी-फूटी और लगी--

जैसा की हमें यहाँ दिखाई दे रहा है की यह एक सर्किल सा स्विमिंग पूल है और इसके अंदर बहुत सरे फूआरे लगे हुए है।